पहाड़ों की ऊपर बहुत हरी भरी--

हमें कुछ लोग भी बैठे हुए नज़र आ रहे हैं।

इस दृश्य में हमें एक ग्राउंड दिख रहा है।

और घर भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में हमे बहोत सारे स्टूडेंट्स योगा करते हुएं नजर आ रहें हैं।

वह अपनी फोटो खि फोटो खिंचवाती हुई नजर आ रहा है।

देखने में यह बिल्डिंग हमें किसी स्कूल या कॉलेज की लग रही है।

इसके बाहर एक बहुत बड़ा ग्राउंड भी बना हुआ है।

यह दृश्य हमें किसी शॉप का दिखाया जा रहा है।

इस दृश्य में हमें दो जे_सी_बी मशीन्स दिखाई दे रही हैं।

बहोत सारी चेयर्स टेबल्स दिख रही है।

यह दृश्य हमें किसी दुकान का दिखाया जा रहा है।

हरे पीले और नीले रंग से पेंट किया हुआ है।

यह दृश्य हमें किसी शहर का दिखाई दे रहा है।

उसके सामने हमे बहोत सारी व्हीकल्स बाइक्स और कार --